इस तस्वीर में एक नदियाँ दिखाई दे रही है नदियाँ में एक नाव दिखाई दे रहा है।

पत्थर का पुराना तस्वीर दिख रहा है जो कि लड़कियाँ घूमने आए हुए है।

घर का कलर वाइट दिख रहा है टाइल्स भी है।

एक बुलु कलर करकट दिख रहा है एक टेसफार्मर दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक खेत दिखाई दे रहा है जो कि खेत में दो-तीन गाड़ियाँ दिख रही है।

घर के अंदर कई आदमी लोग सो रहे हैं।

इस तस्वीर में एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

एक हेलमेट दिखाई दे रहा है।

टीचर दिखाई दे रहे है कई सारे पंखे दिखाई दे रहे हैं।

एक दुकान दिखाई दे रहा है।

कई सारे पंखे दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक नदियाँ दिखाई दे रहा है।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

एक थास्पर्मा दिखाई दे रहा है।

हरे सारे घास फूस दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग नी--

इस तस्वीर में एक --

घर का पेंट काला है।

कई सारे घर दिख रहे हैं।

एक लड़का दिखाई दे रहा है।

कई सारे दीवार पर फ्रेम दिख रहे हैं।

हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

एक लोहे का गेट दिख रहा है।

एक सड़क दिखाई दे रहा है।

हरे भरे पेड़ पोथे दिख रहे हैं।

एक ताड़ी का पेड़ दिख रहा है।

जैसे कि अनार है।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

जिलवा जी दिखाई दे रहा है।

घास हरे-हरे दिख रहे है।

टावर दिखाई दे रहा है।

एक ऑफिस दिखाई दे रहा है ऑफिस के अंदर कई लड़के और लड़कियाँ दिख रही हैं।

कुर्सी दिखाई दे रहा है ऐसी दिखाई दे रहा है।

पर्दे दिखाई दे रहे हैं कैमरा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक सैलून दिखाई दे रहा है।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

कोई हैलर दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सियाँ दिखाई दे रही है।

फूलो माला सजाया हुआ है गमले दिखाई दे रहे हैं बैलून दिखाई दे रहा है।

सड़क पर कई सारे गाड़ियाँ दिख रही हैं।

ठेस फार्मा दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।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

घर के अंदर कई सारे पलंग दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक संस्थान दिखाई दे रहा है।

जो कि पारिवारिक कल्याण संस्थान है।

सड़क के किनारे मकान दिख रहा है।

लोहा का गेट दिख रहा है।

ज्वेलर्स का फोटो दिख रहा है।

घर का कलर बैगनी है।

जिसका नाम इंडियन ऑयल है।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

एक कुर्सी दिखाई दे रहा है।

सरवानी दिखाई दे रहा है।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं घर दिखाई दे रहा है।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

जिसमें कई लेडीज पर्स दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सी दिख रही है कुर्सी पर लाल गमछा है।

एक गाड़ी दिखाई दे रहा है माटी दिखाई दे रहा है।

एक बोतल दिखाई दे रहा है।

एक काला कलर का कपडा देख रहा है।

एक पंखे दिखाई दे रहे हैं।

कई सारे खिलौने नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक पुल दिखाई दे रहा है।

कई सारे लड़के और लड़कियाँ खारा देख रही है।

केला का पत्ता दिख रहा है।